एक गेट नजर आ रहा है। यह मेन गेट है।

पड़े हैं और उन झूलो में बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य किसी के घर के अंदर का है।

अनेक छोटे-बड़े डम्बल धरती --

बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।